प्लेट में एक चम्मच एक प्लेट काली कलर की है दो कवाब रखे हैं सलाद रखी है गाजर शिमला मिर्च की पतली सी स्लाइस रखी है पनीर है।

एक हड्डी का ढांचा रखा हुआ है उसे--

एक टीचर है डांस सिखा रही हैं बच्चे हैं।

डांस सीख रही है लड़की हैएक लड़की चोटी बाँधी हुई है।